यह एक डांस अकेडमी है --

जैसे कि आप देख सकते हैं यहा दो दोस्त हाथ मिला रहे हैं जैसे मेले में मिल जाते है न मेले में कोई मिल जाता है तो हम कहते है के हाँ भाई क्या हाल है।

यहा पर काफी सारी वैरायटी है जैसा कि आप देख सकते हैं कुर्सी भी स्टाइलिश वाली है।

यहा पे आपको तरह तरह की मछलिया हैं और आप देख रहे हैं के दुकान का नाम है एमबीआर फिश सेंटर --

ये एक सब्जी मंडी है यहा पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोहोत भीड़ रहती है और यहाँ पे सभी व्यापारी अपना बिज़नस करते हैं। सब यहाँ पर अपनी सब्जी बेचते हैं।

और यहाँ सुबह के टाइम पे बोहोत भीड़ रहती है पैर रखने तक की जगह नही --

आप देख सकते हैं जैसे कि ये दो दुकानें हैं हेयर सैलून की और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ भी है।

यहाँ पे दो लेडिज है | दो जैंट्स है और सीटें है |

और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे बाईक स्कूटर खड़े है और एक आदमी भी है यहाँ पे और आदमी अंदर भी हैं।

जैसे कि आप देख रहे है ये एक एरोप्लेन है और यहाँ पे जी अंकल है सर जेसे फोटो खिंचवाया हो अपना लेडिज है अपने बच्चे को ले रही है।